और आसपास पेड़ भी है।

यह एक रोड पर दुकान है जिसके बाहर दो बोर्ड है।

इस दुकान में एक कुर्सी एक टेबल है।

इसमें लैपटॉप रखे हुए हैं बहुत सारे एक कैमरा और लाइटें लग रही है।

जिसके जिसके आसपास लकड़ी पड़ी हुई है। एक म्म डॉल है।

जिस दुकान के छत पर तीन चार पंखे हैं।

ये हैं एक छत है जिस छत पर बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं।

कुर्सियां काउंटर टेबल एक आदमी स्कूल से बाहर फोन चलाता हुआ आ रहा है।

यह एक दुकान है इसमें बहुत सुंदर पेंट किया हुआ है और गुब्बारे भी सजे हुए हैं।